यहां ट्रेन जैसे दिखने वाले वेहीकल का रंग लाल है।

राइट साइड एक टेबल भी रखी हुई है।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

एक लाल रंग का चेयर भी रखा हुआ है।

फोटो में एक बिहार बिल्डिंग दिखाई गई है जिसके आगे एक लाल कलर की गाड़ी पार्क है।

बिल्डिंग के ऊपर मिला होम स्टे लिखा गया है।

इस फार्मेसी के स्टोर के लेफ्ट एंड राइड साइड के शेल्फ में बहुत सी दवा रखी हुई है।

काफी और चम्मच दोनों काले रंग का है।

प्लेट किसी टेबल पे रखी हुई है उसके राइट साइड एक पेपर रखा हुआ है।

फोटो टो में दो व्यक्ति के राइट साइड में चट्टान सा कुछ बना हुआ है।

यह फोटो में किसी हॉल को दिखाया गया है।

सभी चेयर्स व्हाइट कलर के कपड़े से ढके हुए हैं।

पीछे का दीवाल येलो रंग का है जिसमें काला दाग लगा हुआ है।

इस प्लेस के वॉल्स का रंग येलो है जोकि हाफ वॉल है।

नीचे वो हरा भरा मैदान है और लेफ्ट साइड बहुत सी चेयर्स रखी हुई हैं।

भी एक बिल्डिंग भी दिखाई दे रहा है जो कि येलो रंग का है।

ऊपर के सीलिंग की तरफ एक सफेद कलर की लाइट जल रही है।

बिल्डिंग के चारों तरफ पेड़ पौधे हैं और हरियाली ही हरियाली छाई हुई है।

बच्चों लोगों ने ऑरेंज कलर का शर्ट पहना है।

फोटो में मॉन्कस ने ऑरेंज कलर का पोशाक पहना है।

इसमें बहुत से टेबल और चेयर्स है।

सामने दो लाल रंग का टिशु है और चार ग्लासेस भी रखे हुए हैं।

फोटो में किसी व्यक्ति को जिम करते दिखाया गया है।

फोटो रात के समय का है।

यह फोटो दिन के मौसम का है और दो लड़के मैदान के बीच से जा रहे हैं।